सारे लोग कुछ स्टेप्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं जिसमें दो--

और दो बच्चे अलग जाके बैठ गए हैं।